चेयरो पर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

एक तो पहाड़ दिख रहा है जो कि स्‍तूप जैसा लग रहा है और रेड कलर का दिख रहा है नीचे बहोत सारी अ झाड़ियां सी दिख रही हैं जिनमें घास लाल दिख रहे हैं ब --

लाइट भी दिखाई दे रही है और ऊपर बहुत सारे कपड़े लगे हुए भी दिखाई दे रहें हैं नीचे फर्श ब्राउ का ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है।

बीच में बहुत सारे लोग चल रहे चल रहे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है बहुत।